ये दुकान बंद दिख रही है दो-तीन दुकाने दिख रहे जिनके शटर बंद दिख रहें हैं।

और रास भर झाड़ां दिख रहे हैं बड़ा सा खुला सा मैदान दिख रहा है अच्छा खासा।

डेकोरेशन अच्छा खासा किया गया स्टेज पर कुछ लोग वहां बैठे हुए हैं और ठहरे हुए भी--